साड़ी का डिजाईन भी बोहत खूबसूरत लग रहा है बोहत ब्यूटीफुल लग रहा है।

बोहत सुन्दर लग रहा है सजावट बोहत अच्छा लग रहा है।

बहोत ब्यूटीफुल लग रहा है सजावट फूल का भी सजावट बहोत खुबसूरत लग रहा है और डिजाईन भी बहोत अच्छा लग रहा है।

बोहत ब्यूटीफुल लग रहा है जंगल और पहाड़ बोहत खुबसूरत ल --

बोहत बोहत खुबसूरत लग रहा है बोहत सुन्दर लग रहा है सजावट बोहत खुबसूरत लग रहा है बोहत ब्यूटीफुल लग रहा है सजा--

और फोटो भी बोहत सुन्दर सुन्दर है बोहो अच्छा-अच्छा है फोटो बोहत खुबसूरत खुबसूरत फोटो है बोहत सुन्दर लग रहा है सजावट--

रूम बोहत अच्छा लग रहा है और बोहत खुबसूरत लग रहा है रूम और बेंच भी बोहत सुन्दर-सुन्दर है बोहत अच्छा लग रहा है बेंच ।

ठेला बोहत अच्छा लग रहा है बोहत सुन्दर लग रहा है ठेला और ठेला कलर भी बोहत सुन्दर लग रहा है बोहत अच्छा लग रहा हैं ।